ईं तस्वीर का अनुसार हमे एक गाड दिखण लगीं और गाड पर पाणी बहण लग्युं गाड का अलग बगल हमे पहाड़ दिखण लग्यां।